यह एक कोई फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में --

जो कालम को खड़ा कर रहे हैं। नीचे गिट्टी अद्धा बिछाया गया है और कालम को एकदम सूत बाई सूत में खड़े कर रहे हैं लोग।

अच्छे-अच्छे लोग भी आते है यहाँ से अच्छी-अच्छी मिठाईया खरीद के ले जाते है बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान है।

गेट पे देख रहे बहुत सारी गाड़िया दिख रही हैं। इस लाइब्रेरी मे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है प्रतिभा लाइब्रेरी मे।

रॉयल पैलेस है बोहोत बढ़ियाँ सजावट की हैं रॉयल पैलेस में। यहाँ पे बोहोत अच्छी री सजावट हुई है।

वॉलपेपर लगाया हुआ है और साइड मे एक पर्दा भी है हैंगर पे टांगा हुआ पर्दा हैं।

ई लकड़ी की कुर्सी है। इस लकड़ी की कुर्सी में बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है। दो लेडिसो को बनाया गया है। स्वागत --